तस्वीर में देखा जा सकता है की ये चर्च की तस्वीर ली गई है बीच में खड़े है और यह साइड से सब लोग बैठे हैं | औ --

वहीं ये आदमी कर रहा है रेड कलर कारपेट का पूरा बिछा हुआ है स्टेज बना हुआ है उस स्टेज पे व्हाइट कलर का फ्रॉक और पेजामा पेहन कर ये कथक्कली कर रहा--

इस तस्वीर में देखा जा सकता है की ये हेयर एक्सपर्ट पर्सनल सैलून है।

यहाँ इस तस्वीर में देखा जा सकता है की एक बस खड़ी है वाइट कलर की वातानुकूलित बस है यह सर्विस बस है और --

और दो आदमी एक लड़का और एक आदमी हैं जो यहाँ पर से गुजर रहें हैं और ये मंजिल ऊपर दुकानें हैं और निचे यूनियन बैंक ए.टी.एम. है।

यहाँ हरे-हरे गेहूं पूरे उगे हैं और दूर से एक प्लास्टर लगा हुआ दीवाल दिख रहा है पिंक कलर का और सारे बड़े बड़े घने पेड़ जंगल --

इसमें देखा जा सकता है। इस तस्वीर में यहाँ पर पाठशाला है। स्कूल सरकारी बच्चों के लिए ड्रेसेज है जो यहाँ पर सरकारी बच्चों के लिए पहन --

टेबल लगाए गए हैं और लकड़ी कलर के और पूरा ऊपर लाइटिंग से सजावट की गई है।

अगल-बगल ढेर सारे पहाड़ हैं और दो गाय खड़ी हुई है यहाँ पर और ये अगल-बगल पूरे पहाड़ों पर काई जम गई हैं और पुरी ग्रीन ग्रीन पानी में भी काई जम चुकी है और अगल-बगल ढेर सारे पहाड़ ऊंचे-ऊंचे --

इस तस्वीर में देखा जा सकता है ये ब्यान हुंडाई का एक शोरूम है यहाँ पर कार सर्विस और सब यहाँ पर होते हैं बाइक के बाहर एक बाइक खड़ी है जो काली कलर की अंदर एक टेबल है।